कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक कार खड़ी है। कुछ बैठे हुए हैं। एक रोड पड़ा हुआ है।

माइक है कुर्सी है और बेड है।